जिसके दाये और बाये तरफ बहोत बड़े-बड़े दो चार पेड़ देख पा रहे हैं हम। बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा बोहोत मैदान देख पा रहे हम।

बाईं से एक सड़क गयी है। सड़क के उस पार हमें बिजली के बहोत सारे खम्भे दिख रहे हैं। बाईं तरफ ब्रिज का काम चल रहा दायें तरफ हमारे --

छत के ऊपर बैलून दिख रहे हैं हमें। आ दो चार लाइटें लगी हुई हैं।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

हमें यहाँ पे बड़ा सा पानी का फव्वारा दिख रहा है।